नया यहाँ पे चेयर है और घर है और फूलों से भी सजाया गया है पंखा लगा हुआ है बहुत सुंदर है।

ये बहुत सुंदर है इसमें सब में जो है ये लगा हुआ है देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा है।

छोटा-छोटा पेड़-पोधा भी है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है और यहाँ से और भी पेड़ सब है।

बहुत सारी गर्ल हैं और इन्होने कुछ ये सब एक लड़की जिसने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है और मास्क लगाई है कुछ बुला रही है ।

और इसका ड्रेस बहुत सुंदर है उसके पास में और एक लड़की है वो भी कुछ बना रही है और एक लड़की सब को खड़े हो के बता रही है कैसे बनाना है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छी है।

और यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी सब है। दिखने मे बहुत अच्छा है वाला लड़का भी है। देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत --